और इस मस्जिद में जो है ढेर सारे लोग आते हैं और अपनी नमाज अदा करते हैं ये मस्जिद बहुत ही अच्छा मस्जिद --